यह एक ख्रिश्चन लोग का घर है इस इस घर --

एक बड़ा सा दुकान है जहाँ पे मेगी वगेरा बिक रही है और बाकी सामान भी --